यहाँ पर एक वेपारी किफायती दामों मे इन ग्राहकों को अपने फलों को बेच रहा है तथा एह ग्राहक उन्हे खरीद रहे है।

ए बड़ा ग्राउंड मौजूद है यह देखने में बहुत सुंदर प्रतीत होता है तथा ए अंदर से और भी बड़ा और अच्छा है।

एक छोटा सा तालाब है जो इसे ओर सुन्दर आकर्षित बनाता है इस छोटे से मंदिर में बोहोत अच्छी कलर से रंग किया गया है।

यहाँ पर वृक्ष भी लगाये गये है जिसके माध्यम से यहाँ का वातावरण स्वच्छ लग सके यहाँ पर बहुत सुंदर -सुंदर चीजें भी बनाई गई --

मंदिर मे बहोत सुंदर सुंदर कलाकृतिया शिल्पकारों द्वारा बनाई गई है इस मंदिर मे बहोत सुन्दर पत्थर का इस्तेमाल किया गया है जो कि इसे और आकर्षित बनाता है।

यह एक गाय है यहाँ पर अपनी भूख मिटने आई है तथा यहाँ की हरी हरी घास खा कर अपना पेट भर रही हैं।

इस मे बहुत सुंदर लाइटे लगाई गई हैं जो की इसे और सुंदर बनाती है इसमे काफी आकर्षक चीज़े है।